उसके साथ मे हम एक अध्यापिका को भी देख पा रहे है जो कि गुलाबी रंग की साड़ी पहन के मास्क लगा के खड़ी हुई है।